और भी बहुत सारा समान रखा हुआ है लाइट्स भी लगी हुई है और शीशे के बहुत बड़े बड़े गेट भी बने हुए हैं।

जिसमें बहुत सारे पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें बहुत सारा पानी बह रहा है।

और एक एल_सी_डी भी लगी हुई है और कांच का गेट भी लगा हुआ है।

और बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं छतरी भी दिखाई दे रही है।

यह एक बहोत बड़ा मैदान है।